ये घर दिखाई दे रहा है और ये घर पुल के ऊपर बना हुआ है और--

और नदी के ऊपर पूल है और उस साइड पेड़- पौधे दिखाई दे रहे हैं |

यहां पर एक मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है इस कॉलेज के बाहर एक टीन सेट भी हो रहे है और इस टीन सेट के नीचे बहुत सारी गाड़ियां धरी हुई है।

हमें यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है इस मैदान में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है और बहुत दुरी पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहाँ पर मैरिज हाउस दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर मैन गेट फूलों से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।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

हमें यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है इस मैदान मे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और मैदान के बहुत दूर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं |